और यहाँ आने और जाने के लिए भी रास्ता है।

यहां पर एक बहोत बड़ा-सा तालाब है और तालाब के बीच में एक रास्ता है आने और जाने के लिए --